बोहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे बोहोत सारी सफ़ेद गाड़ियाँ हैं यहाँ यहाँ एक काली गाड़ी भी है यहाँ पे एक की गाड़ी भी है यहाँ पे तीन से चार बाइक भी खड़ी है।

तस्वीर बनाई है उपर ड्रेगन सा जियो एवं बागी लिखा हुआ है यहाँ पर एक लड़का कम्प्यूटर में काम कर रहा है यहाँ पर दो कम्प्यूटर बंद है यहाँ पे प्लास्टिक की तीन चेयर --

यहां पे नदी दिखाई दे रही है नदी के पास में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है नदी में नदी के पास में तीन जिसमे लाइट जलाई दे रही है।

और उसके में पीले बोर्ड में चॉइस लिखा हुआ है यहां पर एक दुकान है जिसमें की दिल्ली कॉस्मेटिक्स लिखी हुई है और यहां पे एक मिठाई की दुकान है जहां पर कोलकाता स्वीट्स लिखा --

पूरी काली रंग की बाइक है जिसके पास में डिक्की भी लगी हुई है लाल रंग की बाइक की डिक्की लाल रंग और काली रंग का बाइक का डिक्की काली --